और यहां पर फूल का रंग है पीला।

और यहां पर नीचे टेल्स डाले हुए हैं।

यहां पे योगा चलती है और यहां पर दो फैन हैं और यहां पे--

यहां पे बाहर से दिख रहा है अंदर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है।

गेट रखा हुआ है और ये गेट का रंग है--

केसरी और दूसरे का रंग है हरा और तीसरे का रंग है--

वहां पर रोड है और यहां पे साइकल में ये --

और यहां पे तीन गाड़ी खड़ी हुई हैं और तीन कार खड़ी हुई हैं।

साइकल में कुछ सामान रखे हुए हैं वो लेकर जा रहे हैं।

बॉक्स रखे हुए हैं और यहां पे ले चालू हैं और यहां पर दो लोग हैं एक औरत हैं--